यहां मैं मुझे बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रास भी दिखाई दे रही है।

और नीला कलर का समान लोग भी बहोत सारा दिखाई पा रही है।

ये यहां पे मुझे एक्सरसाइज करने का मशीन भी बहोत सारा दिखाई दे रहा है।

आसमान भी मुझे सफेद रंग में दिखाई मिल रही है।

यहां में मुझे तीन नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है।

कोई कोई जो मास्क पहना हुआ दिखाई मिल रही है।

वहां में बैठने के लिए दो कुर्सी दो टेबल रखा गया है।

इस पिक्चर में मुझे खाना खाके खत्म कर देला प्लेट दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है।

घर की आसपास में फ्लैग भी लगाया हुआ है छोटा छोटा सा।

कुछ जगह में सीढ़ी भी लगाया गया है ऊपर उठने के लिए।

फिर मुझे यहां में एक दरवाजा भी दिखाई दे रही है आदमी घुसने के लिए --

आसमान भी मुझे सफेद रंग में दिखाई दे रही है।

ये यहां में मुझे बहुत सारा डब्बे लोग भी दिखाई दे रहा है।

पानी भी मुझे सफेद रंग में दिखाई दे रही है।

यहां में मुझे एक आदमी गाड़ी खोला हुआ दिखाई मिल रही है।